फुव्वारे लगे है सामने बहुत सारी मूर्तिया है कोई नाच रही है तो कोई ढोलक बजा रहा है।

यहाँ एक बैंक है बैंक में लकड़ी के दरवाजों से छोटे छोटे कैबिन बने हैं।

यहाँ एक बहुत बड़ा महल है महल के अंदर सफेद रंग का कलर हो रहा है ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर --

यह एक अस्पताल है अस्पताल मे जमीन पर सफ़ेद और लाल रंग के पत्थर है।